जिसमें बहोत सारी टेबल और चेयर्स दिखाई दे रहीं हैं।

सेल करने जाएंगे तो इनकी दो गुना कीमत मिलती है।

जिसमें बहोत सारे सर्टिफिकेट लगे हुए हैं।

यह चित्र एक साड़ी की दुकान का है।

और इस दुकान पर बहोत सुंदर साड़ियां दिखाई दे रही हैं।

यह चित्र एक डैम का है।

यह चित्र एक गार्डन का दिखाई दे रहा है।